यहां पे एक प्ले स्टेशन है उसके अंदर साइड में सीढ़ियां हैं सीढ़ियों के पास इधर एक बोर्ड रखा हुआ है।

ये प पास येलो कलर का एक ग्राउंड है एक ग्राउंड उपर एक जाड़स है जाड़स के उपर रेड कलर का ठहेरने की जगह --

के पास बड़े बड़े खंभे हैं खंभे के पास इधर हरियाली सी झाड़ है झाड़ के--

टाप पहना है एक औरत ने येलो कलर की साड़ी पहना है वहां पर कुछ दिखा रहे हैं ब्लैक कलर का आदमी वहां--

यहां पे एक पार्क है पार्क के ऊपर एक पाइप है पाइप के पार्क के जो कट्टा है उसके ऊपर हरियाली है छोटे छोटे झाड्स है।

यहां पे तीन बड़े बड़े मि मिरर हैं मिरर के सामने बाजू तीन बलूंस लगे हुए हैं डोरे--

नीचे साइड सोफा सेट है एक आसमानी कलर का उसके बाजू और एक सोफा सेट है आसमानी कलर का उसके ऊपर ए--

कछुए हैं कछुए फिर वहां पे एक सीढ़ी रखी हुई है कछुए वहां से ऊपर आ रहा है।

यहाँ पे आसमानी कलर की टीशर्ट पहनी हुआ है एक आदमी ने--

उसके पीछे एक रेड कलर का बैग है बैग के ऊपर पथरे है पथरे के ऊपर के और आदमी है।

यहा पे कुछ औरते मंदिर की पूजा कर रही है उनके सामने एक लड़की कुछ हाथ में लिए हुए--

कलर का है उसके अंदर जाने का रास्ता है उसके पास एक रेड कलर का बम्बू है।

इतने सारे आदमी हैं वो लोग फूल्स ले एक लो एक आदमी ले जा रहा है तो एक--

इसमें बहोत सारी जाली है जाली हर जाली इसके अंदर एक फूल ढके हुए हैं फूल के गुलदस्ता है।

एक और बड़ी सी सेलोनी है सेलोन के पास इतनी सारी झाड़स है।